छो छोटा सा दुकान है पीछे में।

यहाँ पे एक दो आदमी है एक माँ और एक बच्चा फोटो है फोटो पूजा कर रहे है और फूल उल लगा हुआ है बहुत सूंदर दिखाई है।

यहाँ पे एक रेल पटरी है और रेल के पटरी के बगल में घर है और पू पूरा गिरा हुआ है और एक आदमी है।

मेन सैलून का दुकान है और एक आदमी है और अंदर में दू आदमी सब है। सामान ले रहें हैं।